और टिकट अ भी मिल रही है काफी मात्रा में भीड़ लगी है जो ऐसा लगता है पैसेंजर्स है।

और काफी सारी मेडिसिंस है सिरप भी है।

स्टॉल पे जा के और इधर पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।